बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग किसी ऑफिस की लग रही है बिल्डिग के बाहर एक बोर्ड लगा है बोर्ड पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी लिखा हुआ है।

कुछ मछलियां छोटी दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं यहां पर काफी सारे बल्ब्स लगे हुए हैं यहां पर काफी सारे टब दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ बॉक्स नजर आ रहा है।

पीछे एक टावर नजर आ रहा है यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहै हैं पीछे पहाड़ नज़र आ रहै हैं।

गेट का किसी मस्जिद का नजर आ रहा है मस्जिद के बाहर एक गेट लगा हुआ है गेट काले कलर का है यहाँ पे काफी सारे बैलून्स लगाये गए हैं यहाँ पर काफी सारा डेकोरेसन किया गया है पीछे कुछ चप्पल दिखाई दे रहे हैं।

ऐ.टी.एम. है ऐ.टी.एम. के बहार एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर एस.बी.आई. लिखा हुआ है बोर्ड नीले कलर का है यहाँ पर दो लड़के नजर आ रहै हैं।

सलून दिखाई दे रहा है सलून काफी अच्छा दिखाई दे रहा है सलून के बहार एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड लाल कलर का है बोर्ड पर स्पा एंड सलून लिखा है यहाँ पर काफी लोग दिखाई दे रहे हैं सामने एक लड़का नज़र आ रहा है ।

सैलून में काफी सारे फैन दिखाई दे रहे हैं सैलून में काफी सारी लाइट दिखाई दे रही है सैलून में काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है सैलून में कुछ लोग बैठे हुए हैं सैलून में एक लड़का पिक लेते हुए नज़र आ रहा है सैलून में बाबर दिखाई दे रहा है।

ओट्टो दिखाई दे रहा है ओटो में कुछ लोग बेठे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक व्यक्ति जाते हुए नज़र आ रहा है व्यक्ति के हाथ में ये सफ़ेद झोला है वहा पर काफी सारी दुकान दिखाई दे रही है दुकान पर कुछ लोग दिखाई दे रहै है।

यहाँ पे काफी सारी बुकिंग स्टेशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग आते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग झूले पे बैठे हुए हैं।